और सामने ही हमें सूरज उगता हुआ--

साथ में ग्रीन कलर का कारपेट भी यहां बिछा हुआ है।

और वाइट कलर का टेबल सा भी--

दिखाई दे रहा है जो की ग्रीन कलर का और व्हाइट क्लर का--

घर के आसपास कुछ छोटे पेड़ अतः कियारिया बनी हुई--

और कुछ पहाड़ जैसे दिख रहे है।

यहां पर हमें व्हाइट कलर की बरफ दिख रही--

यहां पर हमें एक घर दिखाई दे रहा है घर के नीचे हमें व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है और पीछे ब्लू कलर का आसमान दिखाई दे रहा--

झाड़ियां अथवा फुल दिख रहे और सामने पहाड़ दिख रहे हैं।

ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है।

ग्राउंड फ्लोर का कलर ब्राउन है।